यहां एक बहुत ही बड़ी नदी पर बना हुआ बहुत बड़ा ब्रिज है ब्रिज के ऊपर से कुछ गाड़िया निकल रही है।

इस फोटो में रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जो बहुत छोटा है।

जिसमे एक व्यक्ति फुटवेयर का डब्बा लेकर खड़ा हुआ है और बाजु में बहुत सारे जूते चप्पल के डब्बे जमे नजर आ रहे है।

यह एक बहुत ही विशाल नदी है जिसमें पानी बहुत ज्यादा है और ऐसा लग रहा है मानो बाड़ आई है।

एक लड़की ने वाइट टॉप पहना है बीच मे और एक ने बोब्बी प्रिंट पहना है।

उनके जो मैट है सब अलग अलग कलर के है कोई ब्लू कलर का है कोई ग्रीन है कोई वाइट है और एक पिंक है।